हुई है और लड़की सब को ड्राइंग बनवा रही है।

ये इस डैम से बहुत मछली मारे जाते हैं।

सारे खंडहर घर दिखाई देते है घर के अंदर --